कुछो के पंडाल हई उते आदमी हई तीन गो लेडीज --

मुरली हई कुंता पर बैलून धयल हई मि चाय --

घर हय उज्जर से पेंट हय एगो आदमी हय।

एगो बहुते बड़का घर ह --

टोपी पिन्हले हई जीन्स करिया पिंहले हई।

उज्जर देखा हई कुर्सी हई।